हाथ में बेग है रोड के साइड में कुछ मकान है।

एक मैदान है मैदान में मिट्टी है कुछ घर जेसा बनाया हुआ है उपर छत है आजू बाजू में कुछ नही है।

निचे कुर्सिया रखी हुई है एक फोर विलर कि गाड़ी है वाईट कलर है।

लाल और नील रंग के ट्रे है एक आदमी है एक बाई बेठी हुई है।

एक हॉल है हॉल की स्टाइल ब्लैक और वाइट कलर की है कुछ टेबल रखे हुए हैं।

आजू बाजू में पेड़ है पेड़ हरे रंग के है ब बादल दिखाई दे रहा है नील रंग का आकाश है।

एक नदी है नदी में एक बोट है बोट पर कुछ लोग है।

दो लोग बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं हरे रंग का मैट है उसके ऊपर खड़े हैं।

उस पर एक हुक अटकाया हुआ है एक बड़ा सा ड्रम जैसा दिखाई दे रहा है।

एक हॉल है हॉल के आगे के दिवार को ग्रे रंग दिया हुआ है एक दरवाज़ा है।

कुछ टूटे फूटे पुराने मकान है मकान के पास--

कुछ पेड़ है एक केले का पेड़ है कुछ घास है नीचे कुछ पत्थर गिरे हुए है।

एक मैदान हैं मैदान पर एक घसरमपट्टी हैं सफेद रंग की--

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग पर कुछ खिडकिय है थोडा नीला और सफेद रंग दिया है एक एसी लगी हुई है।

दीवाल पर एक बोर्ड है सफेद रंग का दो कुड्सिया है टेबल है टेबल पर कुच्छ बुक्स रखे है।

एक रोड है रोड के ऊपर कुछ गाड़िया जा रही है।

एक आदमी है जोकि काम कर रहां है एक रूम है रूम के अंदर काम कर रहां है।

उसने सफ़ेद रंग का शर्ट पहना है ब्लू जींस पहना है हाथ में मशीन है।

बड़ा सा टावर है नील रंग का आकाश है।

कुछ पेड़ लगे हुए है हरे हरे पेड़ है कुछ--

फूलो के पेड़ है पिले रंग के फुल लगे हुए है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ है पेड़ के खोल पर सफेद रंग दिया गया है।

एक बड़ा सा हॉल है हॉल पर कुछ सामान रखे गए है।

ऊपर की ओर चौकोन लाइट लगी हुई है सफेद रंग की आगे कुछ पैकेट रखे गए हैं।

कुछ पर्दा लगाया हुआ है सफेद रंग का एक वायर लटक रहां है सफेद रंग का--

एक दुकान है दुकान पर कुछ बहार टायर रखे हुए है एक के ऊपर एक काले रंग के टायर है।

एक हॉल है हॉल के दीवार पर सफेद पिला नीला रंग दिया गया है।

उस पर हरा रंग दिया गया हुआ है कुछ घास है लगी हुई कुछ पेड़ है आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ है।

एक लोहे का बड़ा सा गेट है काले रंग का कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे है।

कुछ मकान है मकान के बाहर गेट है गेट नील रंग का है।

नीचे कुछ मिटी है कुछ पेड़ लगे हुए है पेड़ कुण्डियों में लगे हुए है हरे हरे पेड़ है।

यहाँ मेडिकल कैंप चालू है कुछ कुर्चिया और टेबल रखे गए है लाल रंग के प्लास्टिक की कुर्चिया है।

एक रोड है रोड के साइड में एक आदमी जा रहा है उसने काले रंग का पेंट पहना है पिला टीसर्ट पहना हुआ है।

एक ट्रक दिखाई दे रहा है ऊपर एक पत्रे का छत दिखाई दे रहां है।

टावर है लाईट के कुछ खम्बे है कुछ पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

तार का है आगे घास है कुछ हरिन दिखाई दे रहे है ह--

एक जिम का हॉल है आगे में एक लड़का खड़ा हुआ है उसने ग्रे रंग का टी शर्ट पहेना है।

काले कलर का ब्दमोदा पहना हुआ है हाथ में मोबाइल है एक बड़ा सा सिल्वर बॉल दिखाई दे रहा है।

निचे कहि कहि लाल और नीला रंग है फर्श पर एक बड़ा सा आइना दिखाई दे रहा--

कहीं-कहीं हरे-हरे पेड़ है कहीं मकान दिखाई दे रहे है दूर-दूर तक एक मकान इधर एक मकान उधर ऐसे दिखाई दे रहे हैं।

नीला रंग दिया हुआ है पत्रे का छत दिखाई दे रहा है हरे रंग का एक बोर्ड लगाया हुआ है हरे रंग का--

एक डेरी का दूकान है नाम लिखा हुआ है बस्तर डेरी फार्म करके ऊपर एक--

जामुनी रंग का बोर्ड लगा हुआ है दूध का चित्र निकाला गया है।

एक आदमी पढ़ा रहां है उसने एक कथिया रंग का टीशर्ट और सफेद रंग का पेंट पहना हुआ है।